अन्दर ग्राउंड में छोटी छोटी घास लगी हुई है ये नहीं समझ आ रहा है यह क्या है शायद हॉकी भी हो सकती हो सकती है।

घास भी दिख रही है घास छोटी-छोटी है उसपे बिच-बिच में पेड़-पोधे भी लगे हुए है जो वे ज्यादा बड़े नहीं हुई है।

इसमें हरे हरे पत्ते दिख रहे है कुछ ब्लैक भी दिख रहे है समझ नहीं आ रहा किस चीज को उगाया जाता है मिटटी दिख रही है जहाँ पर लाल पाई जाती है पत्तियां डली हुई दिख रही है।

पेड़ यहाँ पर जो घास फूस लगाई गई है बहुत अच्छी लग रही है सामने एक आसमान दिख रहा है जिसका बहुत सुन्दर नजारा है थोड़ी सी जाली भी दिख रही है शायद पार्क जैसी ही लग रही है कुछ लम--

और इसकी छत भी दिख रही हैं छत पे पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं सामने एक आसमान दिख रहा हैं आसमान अच्छे रंग का लग रहा हैं।

यह एक पार्क जैसा लग रहा है यहाँ पर बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं यहाँ कुछ पानी के लिए फब्बारे लगाए गए हैं चारो तरफ पेड़ दिख रहे हैं घाँस दिख रही है।